एक बड़ा एक बड़ा भी एक बड़ा सुन्‍दर फोटो भी नज़र आता है और यह देखने मे बहुत --

इसमें हमें यह दिखाई देता है कि यहाँ पे बोहोत सारे अक्षर भी लिखे हुए है जो उर्दू